ये हमारे शहर के किनारे का एक छोटा सा झील है जो काफी सुन्दर काफी मनमोहक है। यह --

की बोट सीखने की कोशिश कर रही है और बोट चला रही है।

यहा पे आके गुफाओं को देखते हैं और इस का आनंद लेते हैं।

जो काफी अच्छा है यहा पर एक चौकीदार भी है जो बहुत अच्छा है।